बाहर से दिख रहा है येहा पे पेड़ पौधा सब दिख रहा है यहां पे मां भुनेश्वर शिवसी लिखा हुआ दिख रहा है नीचे एक मीटर दिख रहा हैं लाइन ऑफ--

यहां पर बोड़ी देख रहे हैं बोरिंग में पानी छीटा रहे हैं यहां पर घास-भूसा दिख रहा फूल-उल दिख रहे हैं।